तार हई ईन घर हई घर में खिड़की हई कईगो खिड़की एकगो दोगो तीनगो चारगो पांचगो छत हई ।

पानी नीला कलर के हय एने ईटा हय।